आजु-बाजू में खिड़कियाॅं लगी हुई है।

लोग नाव में बैठा लेहे है लोगो को--

ब्राइट कलर की अच्छी बिल्डिंग टाइप की बनी हुई है यहाँ पे --

बॉल लगी हुई है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए है यहाँ पे।